यह एक दुकान दिखाई दे रहे हैं।

कुछ गाड़ियां दिखाई दे रहे है और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--

पर्स दिखाई दे रही हैं।

पॉट लाइट दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

बहोत से घर दिखाई दे रहे--

और कुछ बैनर दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर कुछ जिम का सामान दिखाई दे रहा--